लगाए गएं हैं सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

और यहां पर एक कांच का दरवाजा--

और दुकान के अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए --

यहां पर सामने एक दुकान हैं।

यहां पर बहुत सारा पानी हैं।

कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और यहां पर कुछ पेड़--

यहां पर सामने एक मंदिर हैं।

यहां पर सामने एक बिल्डिंग है।

और आस पास कुछ सामान रखा हुआ है दुकान--